मुझे एक चित्र दिख रही है ऐसा मानो जैसे की वो एक जंगल है।

उस मैदान में आस-पास में बहोत सारे लोग हैं और साइड से बल्ब भी जल रहे हैं।

साइड में ही पेड़ हैं हरे-हरे क --

कपड़े पहन कर और एक मिल्ट्री का आदमी है जो --

मुझे एक चित्र दिख रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो एक पिंजरा है।

जिसमे पिज़्ज़ा की लिखी हुवी है और सामने ही सीट बनी हुवी है और चेयर भी लगी हुवी है ।

जिनकी पत्तिया हरी-हरी दिख रही है सामने एक हरे कलर के --

जिसके उपर से एक छोटी बच्ची --

और बालों में गजरा और माथे पे तिलक --

जिसके पास में एक वायबीएस की बस खड़ी है जो सफ़ेद कलर की है उसी की --

और उस पे एक बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर संजय कुमार।

मुझे एक चित्र दिख रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है --

जैसे कि ये एक डोल वाली केक है।

औ खुले आसमान में एक टॉवर --